देखने मे काफी सुंदर लग रहा है कुछ सूरज भी निकला हुआ है बहुत सारे पेड़ पौधे भी हरे भरे दिखाई दे रहे है और यहां पर हमें पत्थर भी दिखाई दे रहे है जो की बहुत दूर दूर तक रखे हुए है पहाड़ से भी दिखाई दे रहे है जो की काफी ऊँचे और यहां पर हरी भरी घांस भी दिखाई दे रही है और सुंदर है।

यहां पर हमे कुछ चमकता हुआ बहुत नजर आ रहा है बहुत ही बल्ब लगे हुए है छोटे-छोटे बहुत ही सुंदर लग रहे है और यहाँ पर हमे बहुत सारी चीजे देखने को मिल रही बहुत लोग बैठे हुए है नीचे फर्श भी है टॉर्च लगे हुए है।